यह एक वीवो का ऑफिस है इसके अंदर मोबाइल रखे हैं।

यह एक ग्रीन पारक है।

सभी का कलर सफेद है ऊपर शावर लगे हैं।